मसाले और खाने पीने का सामान और भी बहोत सारी ग्रोसरी रखी हुई हैं इसमें बहोत सारे मसाले रखे हुए हैं।

तेल रखा हुआ है। नमक मिर्ची अजवायन चाय पत्ती सारा कुछ रखा हुआ है।

अ महावीर जी की मूर्ति बनी हुई है जो की देखने में बहुत आकर्षक लग रही है।

गेट दिखाई दे रहा है उसकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके सामने एक बहोत बड़ा सा खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं एक बाइक खड़ी है एक कार खड़ी है।

हुआ है चारों तरफ गार्डन दिखाई दे रहा है एक कार खड़ी है।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं। अंदर बहोत सारी रैक्स बनी हुई हैं। रैक्स में समान --

इस चित्र में हमें सेना बाग --

अपनी अपनी ड्रेस में हैं और यह इंडिगो --

इस चित्र में हमें एक सैलून दिखाई दे रहा है। सैलून में बहोत सारे रैक बने हुई हैं। सब में --

बिल्डिंग बाहर से सफ़ेद कलर से पुती हुई है। बिल्डिंग के सामने --

में हमें हरदत्तपुर का एक --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

में हमें हवाईअड्डा दिखाई दे रहा है और हवाईअड्डे में एक बहोत बड़ा सा विमान खड़ा हुआ है।

जो कि व्हाइट और ब्लू कलर का है। रेड कलर की उसमें सीढियां लगी हुई हैं। कुछ लोग सीढ़ियों से अंदर जा रहे हैं।

बहोत सारी रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं। एक माल गाड़ी दिखाई दे रही है। लोगों को बैठ --

रेमंड की दुकान बनी हुई है। ब्लड बैंक बना हुआ है। ]

लाल नीले ऑरेंज कलर के झंडे लगे हुए हैं। उसके सामने एक खंम्बा दिखाई दे रहा है और सामने सड़क दिखाई दे रही है।

चौबीस घंटे एटीएम लिखा हुआ है। उसके सामने एक जीप खड़ी हुई दिखाई दे रही है पीछे और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें की बहुत सारा समान रखा हुआ है। बहुत सारे--

रैक बने हुए हैं। इसमें साफ़ सफाई का समान रखा हुआ है।